यह एक बर्फीला मैदान का दृश्य है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं जिसमें एक भी पत्ता नहीं है।

यहां पे एक खंभा भी है जिसको स्टील के मदद से लगाया गया है।

प्रेम इलेक्ट्रिकल्स गायत्री मंदिर रोड बैरिया चौक के नजदीक लिखा गया है।

चुनरी भी बांधा गया है।

पेन पेंसिल साबुन एवं बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे एवं सोए हुए हैं।

मूर्तियों के हाथ में तीर भी दिया गया है एवं तलवार भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

टेबल के ऊपर मोबाइल एवं बहुत सारे किस्म के गिफ्ट भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे खंभे भी दिख रहे हैं।

दोनों के चेहरे पे ब्लर किया गया है।

उसके मुंह पे बलर किया गया है और हाथ में एक बोटल लिया है।

बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं।

ठेले को लोहे की मदद से बनाया गया है।

एक का फुल पैंट का रंग ब्लैक है एवं शर्ट का रंग ब्लू और वह सर पे टोपी लगाया है।